एक बंदा गेट भी लगा हुआ है।

और मेज भी रखीं हुई हैं।

यहां इस थाली में अलग अलग तरह के खाने के चीजें रखी हुई है।

और दो तीन लड़के खड़े हैं।

एक आदमी गाड़ी के हाथ लगा रहा--

यहां इसमें फोटो लगी हुई है।

और खाली जगह नजर आ रही है।

इस घर में घमले भी रखे हुए हैं।

और खेतों में फसल भी नजर आ रही है।

और एक घर भी बना हुआ है।

और पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

और बहोत सारे बच्चे यहां खेल रहे हैं।